एक स्लिप करने वाला बनाया हुआ है यहां पे कितने सारे लोग हैं जो इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं।

आसमान पूरा साफ है और बगल में कुछ और भी मल्टी कलर पेंट है।

कलर उसका है एक का रेड है कुछ का ब्लू है कुछ का ब्लैक है।

एक काउंटर बनाया हुआ है उसपे चॉकलेट वाला रखा हुआ है।

इसमें बहुत सारे लाइटे जल रही है घड़ी लगाया हुआ है।

नीचे भी पेड़ पौधे हैं और पानी के नीचे भी पत्थल का दृश्य दिख रहा है।

उसके गोले गोले ईख से घेरा हुआ है और यहां पे सजाया गया है अच्छी तरह से--

यहां पे कई सारे लोग हैं जो इधर उधर जा रहे हैं आ रहे हैं।

एक यहां पे फादर्स है जिनके हाथ में क्रिश्चियन वाला बनाया हुआ है।

उसके सामने एक बड़ा सा खंबा लगाया हुआ है उस पर दो लाइट लगाया हुआ है।

यहां पर पेट्रोल टंकी का दृश्य दिख रहा है जिसके ऊपर करकट से छाया हुआ है।

यहां पर पार्क का दृश्य दिख रहा है।

बगल में बड़ा सा पेड़ का दृश्य देख रहा है ऊपर में एक झंडा लगाया हुआ है रेड कलर का।

बगल में तोलने वाला रखा हुआ है बनाकर टेबल पर--

यहां पर बड़ा सा ग्राउंड का दृश्य दिख रहा है जिसके सामने कुछ घरे बनाए हुए हैं।

बीच में एक कार खड़ी है जो वाइट कलर का है नीचे बहोत सारे कंकड़ फेंके हुए हैं।

जैसे चॉकलेटी केक और पीला कलर का केक है उसे व्हाइट कलर का केक क्रीम कलर का के --

बाहर में एक बाइक लगाया हुआ है और दीवार का कलर पूरा ब्लू है।

बगल में भी और भी समान है।

कई सारी गाड़ियां चल रही है कचरा फेंकने वाली गाड़ी चल रही है।

उसका एक पार्ट खोला गया है और नीचे रॉड लगाया हुआ है जो ग्रीन कलर का है।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

एक गाड़ी कवर किया हुआ है पर्दा से रेड कलर का।